इस तस्वीर में आप देख सकती हैं क एक ये क्लासरूम है जिस मैं बोहत से बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं।

किसी ने मास्क नहीं पहना है सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं किसी के पास कैंची तो किसी के पास गम ही।

यह एक स्कूल की तस्वीर है। जिस स्कूल मैं बोहत सारी बच्चियां आपस में बैठ कर नीचे फर्श पर एक रंगोली बना रहे हैं।

यह तस्वीर एक गैराज की लग रही है इस गैराज में एक गाड़ी एक मैजिक और दो मोटर साइकिल लगे हुए है।

यह एक एटीएम है। किसी एटीएम के नाम द मुजफरपुर सेंट्रल कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। कोई अपने घर बनााने को तैयारी कर रहा था।